और इसके अंदर कुछ सामान नहीं है।

मुझे इस तस्वीर पर एक पंखा नजर आ रहा है और एक बहुत बड़ा कमरा--

और बच्चे फुटबॉल खेल रहे है।

छोटे छोटे झोपड़ियां भी नजर आ रहे है।

दो इंसान दिख रहे हैं और लाल कलर की झोपड़ियां है।

और उसका पहिया भी नजर आ रहा है।

दरवाजों के ऊपर सजावट के लिए कुछ टंगाया गया है।

इसमें बहुत सारे पौधे लगे हुए है।

और इधर कोई भी इंसान दिख नहीं रहा है।

मुझे इधर पूजा की सामग्री भी दिख रही है।

सफेद कलर की शर्ट और नीचे पर ब्लू कलर की जींस पहनी हुई है।

पीछे में मुझे बच्चों का एक स्लाइड दिखाई दे रही है और सामने में ब्लू कलर की घर।

यहां पर बहुत सारे सामान रखे हुए दिखाई दे रही है।

और दुकान लाल कलर के हैं।